इस फोटो में एक कपड़े की दुकान को दिखाया गया है।

रास्ते के दूसरे तरफ एक बगीचा सा है।

चारों तरफ हम कुछ दुकानें और रास्ते भी देख सकते हैं और इन रास्तों में कई सारे गाड़ी आना जाना कर रहे हैं।

पार्क के बाहर देख सकते है की बहोत बड़ा पहाड़ भी है।

सामने एक एंटी एजिंग जैल भी रखा हुआ है।

इस फोटो में हम एक मछली के दुकान को देख सकते है जहां पर कई तरह के मछली रखे हुए है।

इस फोटो में हम एक बहोत ही खूबसूरत दृश्य को देख सकते हैं यहां पर हमें दूर पर एक पहाड़ भी दिख रहा है।

दूर एक लंबा सा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें एक घर दिखाया गया है।

इस घर के बाहर तीन काली चेयर्स भी रखी हुई है।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

इस फोटो में हमें एक रूम को दिखाया गया है यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं।

काम करनी की वजह से नीचे थोड़ी थोड़ी गंदगी भी हो गई है।

स्टैचू के पीछे एक बड़ा सा पेड़ है।

यहां का मौसम काफी ठंडा है।

इस फोटो में हम एक पार्क को देख सकते हैं।

यहां पर येलो और रेड कलर से मिक्स किया हुआ एक स्लाइड भी है।

इस फोटो में हम काफी सारे डी_जे बॉक्सिंस देख सकते हैं जिसके सामने बड़े बड़े माइकस सभी लगे हुए हैं।

दुकान के अंदर टाइल्स भी लगे रखें हुए हैं।

यह फोटो एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम का है।

माइक्स के साथ साथ ऐ_सी और एक टी_वी भी लगा हुआ है।

उसके अंदर काफी अनेक तरह के पेंट्स मौजूद हैं।

इस फोटो में हम एक रास्ता देख सकते हैं।